ये खेती की जाती है और ये एक मजीद है जो कि ये ग्रजीपुर में स्थित है ये देखिये खेतो के बीच में बना हुआ है।

जिसका नाम है प्रभावती कोचिंग सेंटर यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर भी है। कोचिंग है जहाँ पे लोग आते हैं और ये कार्यालय भी है।

लाइट के खम्भे वगेेरा लगे हुए हैं ये पेड़ दिख रहे हैं सड़क जा रही गई हुई है यहां से लोग निकल रहे हैं ये --

ये जो से सेल लगा है। फाइव परसेंट ऑप चल रहा है। इस दुकान का नाम है शगुन एग्जीक्यूटिव शॉप जोकि गाजीपुर में है।

ये देखिये ये जो दिख रहा है ये नजारा ये गाजीपुर का है। ये गाजीपुर में देखो ये स्थित है। ये जगह कहाँ की है।